दूर-दूर तक जो है सिर्फ मुर्गियाँ ही मु‍र्गियाँ नजर आ रही है और ऊपर की ओर जो है बड़े-बड़े लाइट्स लगाए गए है और साइड में बड़े-बड़े पिलर जो होते है वाे लगाए गए हैं।

साइड में जो है रोड जा रहा है और उसके पीछे बड़ा सा पेड़ नजर आ रहा है।